खाली मैदान है काफी बढ़िया लग रहा है देखने में। खाली ग्राउंड --

हवा आ रहा है। कैसे ए.सी. पंखा लाइट --

पेड़ पे भी लाइट लगाया गया है काफी बढ़िया लग रहा देखने में --

बाईस चालीस का देख सकते हैं ये दिया है --

काफी सुन्दर है काफी बड़ा भी है और बेठने के लिये कुर्सी भी लगाई गयी है।

और काफी सारे पेड-पौधे और हरे-भरे खेत हैं और --

और देख सकते काफी बड़ा ग्राउंड है काफी बढ़िया लग रहा है। काफी अच्छा सीन भी देख सकते हैं।

और काफी सारी है देख सकते हैं।

आप देख सकते हो कि किटी किसी फसी हुई है --

काफी अच्छा सीन है बगल मे मंदिल शान्ति का सीन है काफी बढ़िया लग रहा है।